ये फोटो में एक सुंदर सा जगह दिखाई दे रहा है।

इस फोतो में एक सुंदर सा गेट दिखाई दे रहा हे।

घर के ऊपर एक पत्ता से बनाया हुआ है।

दूर में एक नदी भी दिखाई दे रहा है।

वो जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है।

घर का बाहर में एक स्कूटी और बाइक भी पार्किंग में दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर पे दो टॉयलेट दिखाई दे रहा है।

जिसपे तीन आदमी भी बेथा हुआ है।